आप इस नदी को दूर से देख के आपको इतनी अच्छी लग रही है दूर से कितनी प्यारी लग रही है नदी।

कोई भी किताब ले सकते है।

ये एक बहोत ही सुंदर पुल नजर आ रहा है जहाँ पे --

ये बच्चे भी अपना एन्जॉय कर रहे हैं खेल के साथ।

काफी खुश भी लग रहा है और शक्ल से तो देखने में तो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है बिल्कुल --

और ऐ ये आराम से मुँह क नीच कर के बैठे हुए हैं भाई साहब।

लंबे-लंबे पेड़ लगे हुए हैं।

जहाँ पे बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं।

और रात को तो फवारों और लाइटें बहुत ही अच्छा सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है।

और इसके अंदर बैठे ने की सीटें भी लगी हुई हैं।

और पीछे लड़के के माँ-बाप भी खड़े हैं।

यहां आपको गर्मी न लगे बिल्कुल भी।

घर का कोई भी समन आप ले सकते हैं।

जिसके कोने में पेंट का सामान पेंट के डब्बे लगे हुए हैं।